जिस तस्वीर में ज़मीन के अंदर समंदर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में सामने की ओर एक हवाई जहाज --

और साइड मे एक गेट लगा है लकड़ी का।

ब्रिज बना हुआ है जिसमें एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

और सामने की ओर मंदिर बना हुआ दिख रहा है।

ये मेरे सामने की ओर पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और रोड के आसपास --

की ओर बनी हुई है और नीचे की ओर बड़ी-बड़ी खिड़कियां दिख रही हैं और बीच में एक बड़ा गेट बना हुआ है जी --